और यहां पे जंगल का भी दिखाई दे रहा है।

आदमी आ भी रही है और जा भी रही है।

और नीचे बहोत सारा पानी भरा है।

यहां बहुत सारे आदमी रहते हैं और --

यहां बहोत बड़ी पार्किंग दिखाई दे रही है और--

और ऊपर आसमान बहुत सुंदर प्यारा लग रहा है।

बहोत बड़े बड़े यहां पे पेड़ पौधे हैं पारक भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

लग रहा और कुर्सी भी रखी है।

और एक मोटरसाइकल खड़ी है एक स्कूटरी खड़ी है।

बहोत सुंदर अ होटल या दुकाने नजर आ रही हैं बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

और यहां पे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यह बहुत सारा बजार नजर आ रहा--

यहां मोटरसाइकिल और स्कूटरी भी खड़ी हैं।

यहां बड़ी मेज है और बहोत सारी कुर्सियां भी रखी हुई--

और एक औरत भी या आदमी भी खड़े हैं और कुर्सी भी बिछ रही है।

और यहां बच्चे झूलने आते हैं और पार्क बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

ये बहोत सारी दवाइयो की केमेस्टर की दुकान लग रही हैं यहा पे दवाइयां मिलती हैं।

यह बहोत सारा खाली जंगल दिखाई दे रहा है और खड्डे नज़र आ रहे हैं।

और बड़े बड़े रूख भी नजर आ रहे और खंभे भी बड़े बड़े लग रहे हैं यहां--